यहाँ पर एक हॉल है बड़ा सा हॉल और इसमें कुछ लेटने जैसी टेबल मशीने दिखाई दे रही है।

जिस दीवार पर मोर दिखाई दे रहे हैं और दोनों साइड कलर पेंट दीवार पर किया गया है | सुंदर लग रहा है डिजाइन

जोकि व्यक्ति रेड कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर की शर्ट पहेने दिखाई दे रहा--

यहां पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही है। पहाड़ी पर हरे-भरे पेड़ दिख रहे है और हल्के व्हाइट कलर के कहीं-कहीं पर चट्टाने दिखाई दे रही है।

यहाँ पर काले पत्थर भी दिख रहे हैं सड़क पर उसकी वाइट दीवार है जिसमें येल्लो रेड कलर है नीले कलर का बड़ा सा बोर्ड बना हुआ है ।

यहा पर हम देख रहे है कि एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो जिस पर बॉडीबिल्डर और एक लड़की की पिक दिखाई दे रही है।

यहां पर एक पिलर से बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है ये गेट अम्म पर कुछ लिखा हुआ है जिसको उर्दू भाषा में लिखा गया है।

और इस पे अ अ गेट के खंभे पर ऊपर रेड कलर नीले कलर से डिजाइन की गई है।

यहाँ पे एक रूम में हम देख रहे हैं कुछ मशीनें रखी हुई है जैसे जिम की मशीनें हों और यहाँ पर दीवार पर वाइट --

बॉयस् बैठी हुई है गर्ल्स बॉयस बैठी हुई है जो कुछ नोट कर रहे है या कोचिंग वर्क कर रहे है कुछ भी बहोत ही बड़ा प्यारा सा हॉल है नीचे जमीन रेड कलर है।